यह पिक्चर में दुकान दिखाई दे रहा है।

फ्लोर में सफेद रंग का लगाया हुआ दिखाई दे रहा है।

दीवार का बगल में बहोत सारे गैलन रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दुकान का अंदर में बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

सोफा के आगे में फूल दिखाई दे रहा है।

इस घर के छत पे स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दीवार में सफेद रंग से लगाया हुआ दिखाई दे रहा है।

रास्ते के किनारे में लाल रंग में एयरटेल फोर जी लगाया हुआ दिखाई दे रहा है।

यह पिक्चर में पानी दिखाई दे रहा है।

पानी में आदमी लोग नहाते हुए दिखाई दे रहा है।

घर के बगल में से रास्ता दिखाई दे रहा है।

नीले रंग के सिंटेक्स भी दिखाई दे रहा है।

यह पिक्चर में बहोत सारे आदमी लोग फील्ड में जमा होते हुए दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में दुकान दिखाई दे रहा है।

आसमान में बादल भी छाया हुआ है।

घर के बाहर में बहोत सारे फूल लगाया हुआ दिखाई दे रहा है।

केले एप्पल संतरा भी दिखाई दे रहा है।